तीन मार्शल दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो पर।

एक पेड़ दिखाई दे रहा मुझे इस फोटो पर लकड़ी का झूला दिखाई दे रहा।

पेड़ दिखाई दे रहें मुझे एक फोटो पर--

कुछ लोग पूजा करते दिखाई दे रहे--

मुझे इस फोटो पर नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे--

कुछ चेयर दिखाई दे रहीं हैं।

दो पटरी दिखाई दे रही मुझे इस फोटो पर स्टेशन दिखाई दे रहा --

मुझे इस फोटो पर ईंटा दिखाई दे रहा है।

ईंट ही ईंट दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो पर--